बैठने के लिए जगह भी रखी गई है।

यहाँ पर बहुत सारे मोटर साइकिलस भी रखे हुए है।

एक बहुत बड़े गोडाउन का दृश्य है।